जलाराम नोवेल्टी एंड ब्यूटी पार्लर के एक बाहर स्टोर रूम दिखाया गया है।

जो कि बॉश कार सर्विस में काम कर रहे लोगों की तस्वीर दिखाई देती है।

सफ़ेद कलर की दीवाल है और बाएँ तरफ नीली कलर की दीवाल है जिसमें वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ है और दिन का समय लगता है।

और साथ में एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई गई है सामने की तरह--

ख ह खुद को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है दूसरों को समर्पित कर देना।

जिसके साथ बहुत सारे ऐसे फिटनेस टूल्स दिखाए गए हैं जिसके द्वारा एक लेडी --

फिटनेस टूल्स का उपयोग कर रही है जिसमें वो साइकिलिंग कर रही हैं और एक शांत वातावरण में प्रैक्टिस हो रही है।

और इन पेड़ों से छायादार वृक्ष लगे हैं।

की शॉपी है और ये टायर टु या टायर थ्री सिटीज का दृश्य है।

इस तस्वीर में लगता है की लोग पिकनिक मनाने हेतु कहीं एडवेंचरस पार्क गए हुए हैं जिसमें--

एक पुराना बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट को दर्शाया गया है।

और दोपहर का समय लगता है और ये जगह छाया देने--

एक गाँव का दृश्य बताया गया है जिसमे--

यह तीर्थ में जो मंदिर दिखाया गया है ये लाल रंग का है जिसमें एक--